यहाँ पर हमें एक चलती फिरती सड़क दिखाई दे रही है।

हमे यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है उस मैदान मै केले के पेडे लगे हुए हैं और छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।